यहां पे आस-पास मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है और इस गेट में दो सिंबॉल से बने हुए हैं गोल-गोल राउंड से।

इस आ गार्डन में कुछ स्टेच्यू जैसा भी बनाया गया है इस टूरीस्ट प्लेस में सामने कुछ बाउंड्री सी बनी हुई--

एक बहुत खूबसूरत सा टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है जहां पे रंग बिरंगर रंग बिरंगे कलर से इसे डिजाइन किया गया है ये एक पहाड़ों को तरास कर इसे बनाया गया है।